यहां पर लाल रंग से लिखा हुआ है।

पौधे बेचने वाली जगह है।

इसका गेट लोहे का बना हुआ है।

जो व्यक्ति ले आ रहा है उसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

जोकि एक शेड के नीचे पड़े हुए हैं।

गेट बनाई है छोटी छोटी गुफा बनी है जो की एक लोहे की जाली के अंदर बनी हुई हैं।

और बाहर की ओर एक प्रणाम परिणा लिखा--

वह नीले रंग के लिखा है।